यह एक मॉल है जो काफी बड़ा और काफी बढ़ियां मॉल है ये मॉल में एक मॉल का ये फोर्चून सेक्शन है जहां पर हर एक प्रकार के घरेलु और यर सामग्री खाद पदार्थ मिलते हैं यहाँ पर कुछ डेमो के लिए कुछ आटे वगेरा कुछ रासन की --

पेकेटें भी रखी हैं और उस पर उसके दाम भी लिखे गए हैं। वहां पर हर एक फेस्टिवल और त्यौहार में स्पेशल छुट दी जाती है।

यह एक डाक घर है जहाँ पर अपने शहर के एक कोई भी डाक वगेरा कहीं पर पहुंचाना होता है तो यहाँ से ये एक स्पीड पोस्ट नार्मल पोस्ट वगेरा भी किया है और फॉर्म वगेरा भरने में जो टिकट वगेरा लगते हैं वो यहाँ पे टिकट भी उपलब्ध होता है और यहाँ पर खाते भी खोले जाते हैं।

और यह शहर से सटे हुए नदी है और यहाँ पर एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने लिए इस पर एक पुल का निर्माण भी किया गया है जोकि काफी मजबूत और काफ़ी अच्छा पुल है।

यहाँ पर एक शादी इशू का समारोह हो रहा है जहा पर आ एक दुह्लन के लिये आ बहुत बडिया आ स्टेज भी बनाया गया है जिस पर एक कुर्सी भी लगाई गयी है और लंच वगेरा भोज के लिये अच्छे-अच्छे टेबल और जो कुर्सियां कवर करके रंग-बिरंगे कपड़ो के साथ कवर करके --

यह एक प्राचीन बिल्डिंग > है जोकि बोहोत ही बढ़ियां और अच्छा इसे रेड क्लर में पेंट किया गया। इस बिल्डिंग की सुरक्षा के लिये --

यह एक नदी है जो काफी बड़ी और जो काफी चोडी नदी है जो शहर के बाहर स्थित है। यह जल काफी चीजो मे काम आता है। किसानो को खिचाई वगेरा मे भी यह काम आता है और पूरे शहर इसी नदी से पीने योग्य जल की आपूर्ति हो पाती है एवम --